लाइट दिखाई दे रही है डॉस दिखाई दे रहा है।

पेड़ दिखाई दे रहा है। बहोत बड़ा कलर का दिखाई दे रहा है। लकड़ी घर --

दिखाई दे रहे हैं। एक औरत दिखाई दे रही है चलती हुई जिनने --